इस तस्वीर में काफी सारे लोग दिख रहे हैं। तीन लोग कुछ कंप्यूटर से काम करवा रहे हैं जब कि कुछ लोग हाथ में पेपर लेके खड़े हैं।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

इस तस्वीर में कमरे के एक वाल को दिखाया गया है जिसपर कुछ पेंटिंग्स लगाए हैं तथा कुछ सर्टिफिकेट भी लगा रखे हैं। ये एक प्यारी --

की दिखाई गई है जहाँ बहुत सारे बसेस --